बलून पिंक ब्लू वाइट कलर के हैं यहां पे बहुत।

इसे गेट भी बोलते हैं।

ये लग रहा है घर का मेन गेट है।

यहाँ पर एक वॉचमन है। यहाँ पर एक अपाहिज आदमी भी खड़ा है।

बेकार की लोगो का समाधान करती हैं।

यह एक छोटा सा दुकान है। यहाँ पर दो बाल्टी है एक पीला और एक सफ़ेद।

गुलाब के भी फूल हैं। इसमें रोड भी बने हुए हैं। पेड़ हैं बहोत सारे।

और म्-यहां पर एक गुमटी दुम्मे दुकान है। बिल्डिंग भी है। यहाँ पर बहोत सारे तार लगे हुए हैं।

इस घर पे छत ढाला जा रहा है।

यह बुद्ध शासना अनुभाव लाभ मंगल समाधी रश्मिधर है।

यह एक घर है। इस घर में रेलिंग लगा हुआ है और बहुत ही बड़ा घर है ये।

यहां पर छत ढाला जा रहा है। यहां पर कई सारे मजदूर खड़े हैं।

इ गोद में दूसरी मूर्ति सोइ हुई नज़र आ रहा है।

और गोलम्बर पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं। उन गमलों में पौधे लगाए हुए हैं।